आप देख सकते है यहाँ घर है घर के बाहर बोहत सारे पानी के झरने लगे हुए है लाइट लगा हुआ है स्कूटी लगा हुआ है टेबल है बहुत सारे गमले है जिसमे पौधा लगाया गया है।